लिबर ऑफिस माथ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे
फोर्मुला लिखने के लिए मार्कअप लैंगग्वेज तथा फोर्मुला फॉर्मेट करना यानि फ़ोंट्स अलाइनमेंट और स्पेसिंग
पिछले ट्यूटोरियल में हमने माथ के लिए मार्कअप लैंगग्वेज की शुरुआत की थी
मार्कअप लैंगग्वेज के बारे में अब और सीखते हैं
पहले एक रायटर डॉक्युमेंट खोलते हैं और फिर मैथ एप्लिकेशन रायटर में लाते हैं
यदि रायटर पहले से ही ओपन है फिर इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और फॉर्मुला चुनें
यदि रायटर ओपन नहीं है इसे विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं
एलिमेंट्स एलिमेंट्स विंडो का उपयोग करके आसानी से फोर्मुला लिख सकते हैं
लेकिन फोर्मुला को तेज़ी से लिखने का एक तरीका यह है कि फोर्मुला एडिटर में सीधे मार्कअप लैंगग्वेज लिखना
क्योंकि फोर्मुला के लिए मार्कअप लैंगग्वेज अंग्रेज़ी में जैसे फोर्मुला पढ़ते हैं उसके समान है
उदाहरण के लिए यदि लिखना है 4 इंटो 3 हम फोर्मुला एडिटर विंडो में टाइप करते हैं 4 टाइम्स 3 अगले उदाहरण पर जाने से पहले यहाँ एक रिक्त लाइन इन्सर्ट करते हैं
यह मार्कअप टाइप करें न्यूलाइन और देखें कि रायटर ग्रे बॉक्स एरिया में नई लाइन इन्सर्ट हुई है
टाइप करते हैं सोमे मोरे एक्जाम्पल formulae न्यूलाइन
अच्छे से नज़र आने के लिए एन्टर की एक बार प्रेस करते हैं
और लिखें एक्स ग्रेटर थान इक्वल टो य
हेरे वे विल अलसो नंबर थे फॉर्मुले
अतः हम टाइप करेंगे 1
एक्स ग्रेटर थान इक्वल टो य न्यू लाइन
एन्टर प्रेस करें
ध्यान दें कि रायटर ग्रे बॉक्स रिफ्रेश हुआ है और कंटेंट्स मध्य में आए हैं
अब लिखते हैं160 आ टो थे पॉवर ओएफ 2
और मार्कअप है160 2
आ ऊपरी तरफ पॉइंट करता हुआ एरो 10 न्यू लाइन और एन्टर प्रेस करें
रायटर ग्रे बॉक्स में गणितीय चिन्ह देखें
अब लिखते हैं स्क्वेयर रूट ओएफ 16 4 टाइप करें 3
स्कॉर्ट कर्ली कोष्ठक में 16 4 न्यू लाइन
एन्टर प्रेस करें
इस फोर्मुला को रायटर ग्रे बॉक्स में देखें
ठीक है अब आ सफिक्स एन के लिए एक समेशन चिन्ह लिखते हैं टो डिनोट आ1 आ2 आ3 से लेकर एएन
अतः मार्कअप है160 4
सुम आ अंडरस्कोर एन न्यू लाइन
एन्टर प्रेस करें
अब एक फंक्शन के साथ इंटीग्रल की कोशिश करते हैं
फ़ एक्स डी एक्स इंटीग्रल लिखने के लिए मार्कअप है5 इंट एफएक्स डीएक्स न्यूलाइन
रायटर एरिया में इंटीग्रल चिन्ह को देखें
अब अपना काम सेव करते हैं ऊपर फाइल मेन्यू पर जाए सेव पर क्लिक करें
डॉक्युमेंट को नाम दें मैथेक्सेम्पल1
अब सीखते हैं हमारे लिखे हुए फोर्मुले को फॉर्मेट कैसे करें
ध्यान दें कि सभी मध्य में हैं और उनके बीच ज्यादा स्पेस नहीं है
फॉर्मेट में बदलाव करने के लिए हम ऊपर मौजूद फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं
सभी फोर्मुले को बाईं ओर अलाइन करते हैं
फॉर्मेट फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और Alignmentअलाइनमेंट को चुनें
नई विंडो में लेफ्ट ऑप्शन चुनें
और ओक बटन पर क्लिक करें
देखिए कि फोर्मुले अब बाईं ओर अलाइन हुए हैं
हम फॉर्मेट मेन्यू से फोंट्स को चुनकर फोंट स्टाइल बदल सकते हैं
यहाँ विभिन्न वर्गों को देखें160 हम एक तरह का फोंट वेरियेबल्स के लिए फंक्शंस के लिए अन्य फोंट और नम्बर्स और टेक्स्ट के लिए अलग फोंट सेट कर सकते हैं
फोंट स्टाइल को बदलने के लिए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करें और Variablesवेरियेबल्स को चुनें
सूची में से एरियल ब्लैक को चुनें और ओक बटन पर क्लिक करें
यहाँ ओक बटन पर क्लिक करके फोंट को सेव करते हैं
रायटर ग्रे बॉक्स में देखें कि फोंट बदल गया है
फ़ॉर्मूले के फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए फॉर्मेट मेनू पर जाएँ और फोंट साइज पर क्लिक करें
चलिए बसे साइज बढ़ाके 18 पॉइंट तक कर देते हैं
ओक पर क्लिक करें
हम अन्य वर्गों जैसे टेक्स्ट या इंडेक्सेस या आपरेटर्स की साइज़ बदल सकते हैं
हम डिफॉल्ट बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन सारे फ़ॉन्ट साइज़ बदलावों को उंडो करने के लिए जिन्हें हमने किये हैं
फ़ॉर्मूले में फ़ॉन्ट साइज़ बदलावों पर ध्यान दें
अगला चलिए फ़ॉर्मूले की स्पेसिंग में बदलाव करते हैं
फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें और स्पेसिंग चुनें
चलिए स्पेसिंग बदलते हैं लाइन स्पेसिंग और रूट स्पेसिंग दोनों को 20 प्रतिशत
जैसे ही हम प्रत्येक स्पसिंग प्रकार पर क्लिक करते हैं मध्य में इमेज स्पेसिंग प्रकार के स्थान को दर्शाएगा
फिर से हम विभिन्न वर्गों से स्पसिंग प्रकार चुन सकते हैं चलिए कैटेगरी बटन पर क्लिक करते हैं
या अपने बदलावों को उंडो करने के लिए डिफॉल्ट बटन का इस्तेमाल करिये
चलिए अब ओक बटन पर क्लिक करते हैं
और स्पेसिंग बदलावों को राईटर ग्रे बॉक्स में देखें
एलिमेंट्स विंडो में और अधिक फॉर्मेटिंग उपलब्ध है
चलिए व्यू मेन्यू से एलिमेंट्स विंडो को लाते हैं
यहाँ चलिए कैटगॉरीज़ की दूसरी रो में आखरी आइकॉन पर क्लिक करते हैं
टूलटिप यहाँ पर कहता है फॉर्मेट्स
यहाँ हम सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स एलिग्नमेंट्स मैट्रिक्स न्यू लाइन्स और गैप्स स्थापन चुन सकते हैं
चलिए पांचवे उदाहरण में संख्या 5 के बाद लम्बा रिक्त स्थान रखते हैं
5 के बाद क्लिक करिये
फिर एलिमेंट्स विंडो से फॉर्मेट्सगट लोंग गैप पर क्लिक करें
लम्बे रिक्त स्थान के लिए मार्कअप है टिल्डे चिन्ह
और छोटे खली स्थान के लिए यह तिरय चिन्ह है
संख्या 5 के बाद नये खली स्थान पर ध्यान दीजिये
अतः यह तरीके हैं जिससे हम अपने फ़ॉर्मूले को फॉर्मेट कर सकते हैं
सारे फ़ॉर्मेटिंग विकल्प जो मैथ देता है उनका अन्वेषण करें
ठीक है यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है राईटर विंडो में मार्कअप का इस्तेमाल करते हुए निम्न फ़ॉर्मूले लिखें
यदि आवश्यकता हो तो एलिमेंट्स विंडो का इस्तेमाल करें
समेशन ऑफ़ एक्स टू दी पॉवर ऑफ़ 2 सिन टू दी पॉवर ऑफ़ एक्स प्लस कॉस टू दी पॉवर ऑफ़ एक्स 1 एलिमेंट्स विंडो में फंक्शन्स वर्ग का इस्तेमाल करें पिछली स्लाइड से बढ़ते हुए लिखिए समेशन फ्रॉम 1 टो एन ओएफ एक्स
समेशन के लिए लिमिट्स निर्धारित करने के लिए आपरेटर्स वर्ग का इस्तेमाल करें फ़ॉन्ट को एरियल में बदलें और साइज़ 18 पॉइंट तक
और चिह्नों के बीच में अधिक रिक्त स्थान दीजिये
इसी के साथ हम लिबरऑफिस मैथ में मार्कअप लैंगग्वेज तथा फोर्मुला फॉर्मेट करने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे फोर्मुला लिखने के लिए मार्कअप लैंगग्वेज तथा फोर्मुला फॉर्मेट करना यानि फ़ोंट्स अलाइनमेंट और स्पेसिंग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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद